और ढेर मछली पल्स्टिक में और डब्बा में भी है ।

इस फोटो में बहुत ढेर से लड़का लड़किया आपस में बात कर रहे है।

सूखा घास है थोड़े बहुत बगीचे है।